एक दुकान हैं दुकान में काफी सारे बॉक्सेस बने हुऐ हैं।

टेव वेट लिफ्टिंग की मशीन रखी हुई है एक लड़का सामने से कुछ रोड पकडे हुए है कुछ उठाते हुए दिखाई दे रहा है|

दुकान में काफी सारे पैकेट दिखाई दे रहे हैं एक टेबल दिखाई दे रही है और एक पेड़ लगा हुआ है| उसके बगल में एक अ पोस्टर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है।